एक लैपटॉप है बैग ब्लू कलर का गमला में पौधे हैं।

जिम की दुकान है जिसमें बहोत सारी रखे हुए हैं।

लकड़ों को एक छत केस ऊपर नीचे डटा हुआ है।

जहां पे लोग कुछ बने वो वो येलो टेबल लगे हुए हैं।

घास वगैरह हैं एक झंडे हैं और गाड़ी पे कवर है प्लास्टिक की कुर्सियां हैं आगे टीन है और--

ये फैक्ट्री फैक्ट्री के बाहर एक बाइक वगैरा खड़ी है एक मशीन खड़ी है और बहुत सारा रेता है और यह एक फैक्ट्री है जिसमें--

घर हैं एक है जिसमें पी_एस_एम --